तस्वीर में एक रोड दिखाई दे रही है जिस पर दो बाइक ठेहरी हुई है जिसमें दोनों के दो-दो पहिए रखे हैं और दो हेलमेटे भी रखी हुई है।

बहुत ही खूबसूरत घर नजर आ रहा है जिसमें जिसको व्हाइट कलर से पैंट किया गया है| यहाँ पर पाँच ऊपर की तरफ खिड़कियाँ नजर आ रही है और नीचे की तरफ तीन खिड़कियाँ नजर आ रही है।

कुछ लड़कियाँ डांस कर रही हैं जिनमें से दो ने रेड कलर का आउटफिट पेहना है एक ने दो ने ग्रीन कलर का आउटफिट पेहना है और एक ने ब्लू कलर का आउटफिट पेहना है।

यहां पर पाँच लोग नजर आ रहे है जो कि चार बैठे हुए है और एक खड़ा हुआ है और जो एक्सप्लेन कर रहा है एक शख्स ने रेड शर्ट और व्हाइट पेन्ट पहनी हुई है यहां पर बहुत सारी --

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नज़र् आ रहें हैं जो की डांस कर रहें हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत खुश नजर आ रहें हैं और एक शख्श यहाँ पर बीच में ठहर कर उनकी वीडियो रिकार्ड कर रहा है। य --